synfig का उपयोग करके create a plant animation के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम synfig में आकृतियों को एनीमेट करने के बारे में जानेंगे
हम सीखेंगे आकृतियाँ एवं ग्रुप लेयर बनाना
insert item का उपयोग करके एक vertex जोड़ना
split tangent विकल्प
active point को off option के रूप में चिन्हित करना और
आकृतियों को एनीमेट करना
यहाँ हम एक plant animation बनायेंगे
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu linux 1404 os
synfig वर्जन 102
आइए synfig खोलते हैं
dash home पर जाएँ और synfig टाइप करें
आप logo पर क्लिक करके भी synfig खोल सकते हैं
अब आइए plant animation बनाना शुरू करते हैं
हमें पहले synfig में ग्राफिक्स बनाना होगा
हम एक फूलदार पौधा बनायेंगे
आइए हमारी synfig फाइल को सेव करते हैं
file पर जाएँ और save पर क्लिक करें
वह फ़ोल्डर चुनें जिसमें सेव किया जाना है
फ़ाइल नाम में plantanimation टाइप करें और save बटन पर क्लिक करें
कोई भी अन्य आकृति बनाने से पहले एक सफेद बैकग्राउंड लेयर बनाएं
लेयर का नाम बदलकर background कर दें
toolbox पर जाएँ spline tool चुनें
सुनिश्चित करें कि केवल create region layer चुनी गई हो
toolbox में भरे जाने वाले रंग के रूप में हरा रंग सेट करें
अब यहां दिखाए गए अनुसार spline टूल की मदद से एक त्रिभुज बनाएँ
हमें 3 शीर्ष बनाने के बाद इस आकृति को बंद कर देना चाहिए
ऐसा करने के लिए पहले शीर्ष पर राइटक्लिक करें और loop spline चुनें
इससे एक हरे रंग की त्रिभुजाकार आकृति बन जाएगी
एक चक्रीय त्रिभुज बनाने के लिए हमें tangent handles को थोड़ा सा ट्वीक करना होगा
transform tool पर क्लिक करें फिर प्रत्येक शीर्ष पर राइटक्लिक करें
split tangents चुनें ताकि प्रत्येक शीर्ष के tangent handles को अलगअलग खिसकाया जा सके
layers पैनल देखें
एक नई लेयर बन गई है इसे stem नाम देते हैं
फ़ाइल को सेव करने के लिए ctrl और s कुंजी दबाएँ
अब हम स्टेम की आकृति को एनीमेट करना सीखेंगे
turn on animate editing mode आइकॉन पर क्लिक करें
stem लेयर पर क्लिक करके आकृति चुनें
सुनिश्चित करें कि कैनवास के शीर्ष पर मौजूद toggle tangent handles विकल्प on हो
फिर time track panel पर जाएं और time cursor को 24वें फ्रेम पर रखें
transform tool चुनें
स्टेम के सभी शीर्ष पर क्लिक करें और इसे दिखाए गए अनुसार canvas पर ऊपर की तरफ़ खींचें
आप ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए क्रमशः + और – चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं
फिर रुलर पर जाएँ
दिखाए गए अनुसार कैनवास पर पांच guidelines खींचें
फ़ाइल को सेव करने के लिए ctrl और s कुंजी दबाएँ
toolbar पर transform tool पर क्लिक करें
canvas पर आकृति पर राइटक्लिक करें
फिर insert item and keep shape पर क्लिक करें
guidelines पर 10 और शीर्ष खींचें जैसे यहाँ किया गया है
insert item and keep shape पर क्लिक करके ऐसा करें
अब प्रत्येक शीर्ष पर राइटक्लिक करें
split tangents चुनें ताकि प्रत्येक शीर्ष के tangent handles को अलगअलग खिसकाया जा सके
फिर time track panel पर जाएं और time cursor को 23वें फ्रेम पर रखें
parameter panel पर जाएँ
ग्रुप खोलने के लिए vertices के त्रिभुजाकार आइकॉन पर क्लिक करें
नए जोड़े गए vertices देखें
हमें 23वें फ्रेम पर उन्हें निष्क्रिय करना होगा
नए जोड़े गए शीर्षों पर राइटक्लिक करें
mark active point as off पर क्लिक करें
सभी नए जोड़े गए शीर्षों के लिए भी ऐसा ही करें
फ़ाइल को सेव करने के लिए ctrl और s कुंजी दबाएं
एक बार फिर time track panel पर जाएं और time cursor को 30वें फ्रेम पर रखें
canvas पर वापस आएं
दिखाए गए अनुसार पत्तियों के शुरुआती हिस्से बनाने के लिए शीर्षों को खिसकाएँ
पुनः time track panel पर जाएं और time cursor को 37वें फ्रेम पर रखें
canvas पर वापस आते हैं
पत्तियाँ बनाने के लिए शीर्षों को इस तरह खिसकाएँ
केवल नए जोड़े गए शीर्षों के लिए active point as off पर निशान लगाना याद रखें
time track panel पर वापस जाएँ
time cursor को 45वें फ्रेम पर रखें और शीर्ष को यहां दिखाए गए अनुसार खिसकाएँ
इसी तरह हम stem लेयर में ही दो और पत्तियाँ जोड़ेंगे
time track panel पर जाएं और time cursor को 80वें फ्रेम पर रखें
कली के चारों ओर हरे रंग की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए स्टेम के vertices को खिसकाएँ
एक बार फिर time track panel पर जाएं और time cursor को 90वें फ्रेम पर रखें
फिर keyframes पर जाएँ और एक नया keyframe जोड़ें
अब spline टूल पर क्लिक करें
सुनिश्चित करें कि केवल create region layer चुनी गई हो
toolbox में भरे जाने वाले रंग के रूप में गुलाबी रंग सेट करें
फिर दिखाए गए अनुसार spline टूल की मदद से एक कली बनाएँ
3 शीर्ष बनाने के बाद इस आकृति को बंद करना याद रखें
ऐसा करने के लिए पहले शीर्ष पर राइटक्लिक करें और loop spline चुनें
ध्यान दें कि फॉर्म की ट्रेसिंग अब बंद हो चुकी है
vertices को समायोजित करें और कली की आकृति बनाएँ
लेयर का नाम बदलकर bud करें
bud लेयर को stem लेयर के नीचे रखें
पुनः time track panel पर जाएं और time cursor को 99वें फ्रेम पर रखें
यहां किए गए अनुसार कली के top vertex को खिसकाएँ
फ़ाइल को सेव करने के लिए ctrl और s कुंजी दबाएं
अब layers panel पर जाएं और stem लेयर चुनें
इसके बाद canvas पर वापस आएं और स्टेम की आकृति पर राइटक्लिक करें
insert item and keep shape पर क्लिक करके एक शीर्ष जोड़ें
इसी तरह हमें 4 शीर्ष और जोड़ने होंगे
time cursor को 98वें फ्रेम पर रखें और इन शीर्षों के लिए active point off पर निशान लगाएँ
शीर्षों को दिखाए गए अनुसार खिसकाएँ ताकि हमें इस तरह की आकृति मिल जाए
फ़ाइल को सेव करने के लिए ctrl और s कुंजी दबाएं
अपने काम को बार बार सेव करते रहना अच्छी आदत है
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मैं स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं करूंगी
कृपया नियमित समयांतराल पर ऐसा करते रहें
time track panel पर जाएं और time cursor को 100वें फ्रेम पर रखें
layers पैनल पर जाएं और bud लेयर चुनें
दो बार duplicate पर क्लिक करें
लेयरों को petal_1 और petal_2 नाम दें
time cursor को 108वें फ्रेम पर रखें
दिखाए गए अनुसार पंखुड़ियों के नोड्स को खिसकाएँ
time track panel पर जाएं और time cursor को 115वें फ्रेम पर रखें
layers पैनल पर जाएं और दोनों लेयर petal_1 और petal_2 चुनें
duplicate पर क्लिक करें
नई लेयरों को petal_3 और petal_4 नाम दें
आइए time track panel पर वापस आते हैं
time cursor को 120वें फ्रेम पर रखें
दिखाए गए अनुसार तीसरी और चौथी पंखुड़ियों के vertices को खिसकाएँ
layers पैनल पर जाएं और दोनों लेयर petal_3 और petal_4 चुनें
duplicate पर क्लिक करें
नई लेयरों को petal_5 और petal_6 नाम दें
time track panel पर वापस जाएँ और time cursor को 140वें फ्रेम पर रखें
दिखाए गए अनुसार पाँचवीं और छठवीं पंखुड़ियों के vertices को खिसकाएँ
पुनः time track panel पर जाएं और time cursor को 108वें फ्रेम पर रखें
फिर toolbar पर जाएँ और transform tool पर क्लिक करें
ड्राइंग के स्टेम पार्ट को चुनें
और कली की हरी पंखुड़ियों के शीर्षों को यहां दिखाए गए अनुसार खिसकायें
time track panel पर वापस जाएं और time cursor को 128वें फ्रेम पर रखें
और कली की हरी पंखुड़ियों के vertices को यहां दिखाए गए अनुसार खिसकायें
कर्सर को 0वें फ्रेम पर रखें bud लेयर चुनें
parameter panel पर जाएँ amount को बदलकर 0 करें
petals लेयरों के लिए भी ऐसा ही करें
आइए 89वें फ़्रेम के लिए भी यही करते हैं
turn off animate editing mode आइकॉन पर क्लिक करें
canvas के निचले हिस्से पर मौजूद seek to begin पर क्लिक करें
play आइकॉन पर क्लिक करके एनीमेशन चलाएँ
अब आइए background लेयर में एक gradient जोड़ते हैं
background लेयर चुनें gradient पर क्लिक करें
gradient को दिखाए गए अनुसार background पर ड्रैग करें
outline colour को भूरा और fill colour को नीला सेट करें
आइए अब synfig फ़ाइल को सेव करते हैं
अब हम पूर्वावलोकन देखेंगे
file पर जाएँ और फिर preview पर क्लिक करें
quality को 05 और frame per second को 24 सेट करें
preview बटन पर क्लिक करें और फिर play बटन पर क्लिक करें
हम स्क्रीन पर एनीमेशन का पूर्वावलोकन देख सकते हैं
preview विंडो बंद करें
अब आइए एनीमेशन को रेंडर करते हैं
ऐसा करने के लिए file पर क्लिक करें और फिर render पर क्लिक करें
choose पर क्लिक करें और save render as विंडो खोलें
उस लोकेशन पर क्लिक करें जहां आप रेंडर की गई फ़ाइल को सहेजना चाहते हैं
नाम बदलकर plantanimationavi करें
target ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और एक्सटेंशन के रूप में ffmpeg चुनें
फिर time टैब पर क्लिक करें और end time को बदलकर 150 करें
फिर render पर क्लिक करें
आइए हमारे एनीमेशन को चलाकर देखते हैं
desktop पर जाएँ
वह फ़ोल्डर खोलें जिसमें हमने अपनी फाइल सेव की थी
अब plantanimation avi चुनें
राइटक्लिक करें और firefox वेब ब्राउजर का प्रयोग करके एनीमेशन चलाएँ
इसके साथ ही यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है
आइए सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने synfig में plant को एनीमेट करना सीखा
हमने यह भी सीखा
spline टूल की मदद से आकृतियाँ बनाना
insert item का उपयोग करके एक vertex जोड़ना
split tangent विकल्प
active point को off option के रूप में चिन्हित करना
आकृतियों को एनीमेट करना
यहां आपके लिए एक असाइनमेंट है
विभिन्न रंगों से भरे लंबे बालों वाला सरल कार्टून चेहरा बनाएं
और बालों को एनीमेट करें
आपका पूर्ण असाइनमेंट इस तरह दिखना चाहिए
एनीमेटेड लंबे बाल युक्त कार्टून चेहरा
निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
कृपया इसे देखें
हम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं
कृपया हमसे संपर्क करें
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्न इस फ़ोरम में भेजें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है
यह ट्यूटोरियल इं अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की स्पोकन ट्यूटोरियल टीम से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद